git में branching पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप निम्न के बारे में सीखेंगे:
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट editor उयोग कर सकते हैं
इस tutorial का अनुसरण करने के लिए आपको terminal पर रन होने वाली लिनक्स commands की जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित लिनक्स tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
अब branching के बारे में सीखते हैं
विशिष्ट रूप से branches एक project में नए modules को विकसित या एक bug को fix करने के लिए उपयोग की जाती हैं
यह मुख्य project में बाधा डाले बिना project के नए modules के साथ कार्य करने में मदद करता है
git की default branch master है
नए modules को विकसित करने के लिए हम भिन्नभिन्न branches उपयोग करते हैं
और यह बाद में master branch के साथ merged किया जायेगा
उदाहरण के लिए यह diagram master और newmodule branches के साथ एक रिपॉज़िटरी दिखाता है
master branch में c1 c2 और c3 named कुछ commits होते हैं
फिर c3 commit में branch newmodule बनाई जाती है
c4 c5 और c8 newmodule branch के commits हैं
उसी समय master branch में commits c6 और c7 बनाए गए हैं
यहाँ आप देख सकते हैं कि newmodule branch master branch में बाधा नहीं डाल रहा है
एक बार जब newmodule तैयार हो जाता है तो हम इसे वापस master branch के साथ merge करेंगे
इस tutorial में मैं दिखाऊंगी कि branch कैसे कार्य करती है merging अगले tutorial में बताया जायेगा
terminal खोलने के लिए ctrl + alt + t दबाएँ
हम अपनी git repository mywebpage खोलेंगे जो हमने पहले बनाई
type करें: cd space mywebpage और enter दबाएँ
प्रदर्शन के लिए मैं html files उपयोग करना जारी रखूंगी आप अपनी पसंद का कोई भी फाइल type उपयोग कर सकते हैं
अब git log check करते हैं टाइप करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
पहले हम check करेंगे कि हमारे पास रिपॉज़िटरी में कोई branch है या नहीं
type करें: git space branch और enter दबाएँ
यह पहले उल्लिखित की तरह ही default branch master दिखाता है
मानिए मैं newchapter named एक branch बनाना चाहती हूँ
type करें: git space branch space newchapter और enter दबाएँ
अब branch list देखते हैं टाइप करें git space branch और enter दबाएँ
यहाँ सूची में हम branch newchapter देख सकते हैं
हम master branch के साथ एक asterisk चिन्ह भी देख सकते हैं
यह दिखाता है कि वर्तमान में हम master branch में कार्य कर रहे हैं
newchapter branch में जाने के लिए type करें git space checkout space newchapter और enter दबाएँ
branch का name check करने के लिए type करें git space branch और enter दबाएँ
asterisk देख कर हम समझ सकते हैं कि अब हम newchapter branch में हैं
आगे मैं एक html फाइल story html बनाऊंगी और प्रदर्शन के लिए इसे commit करुँगी
type करें: gedit space story html space ampersand और enter दबाएँ
मैं अपने writer document से जो मैंने पहले सेव किया था इस फाइल में कुछ code copy और paste करुँगी
file को सेव और बंद करें
याद रखें जब भी हम कोई file जोड़ते या मिटाते हैं तो हमें अपना काम commit करना है
staging area में file जोड़ने के लिए type करें git space add space story html और enter दबाएँ
अपना काम commit करने के लिए type करें git space commit space hyphen m space double quotes में added story html in newchapter branch और enter दबाएँ
अब newchapter branch का git log check करते हैं टाइप करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
यहाँ हम अपना नवीनतम commit added story html in newchapter branch देख सकते हैं
अब मानिए कुछ काम करने के लिए हम अपने master branch में वापस जाना चाहते हैं
हम type करेंगे git space checkout space master और enter दबाएँ
git log check करने के लिए type करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
यहाँ हम commit added story html in newchapter branch नहीं देख सकते
यह इसलिए है क्योंकि commit केवल newchapter branch से सम्बन्ध रखता है
अब folder की विषय वस्तु check करते हैं टाइप करें ls और enter दबाएँ
यहाँ हम story html file भी नहीं देख सकते हैं
आगे हम history html file में कुछ बदलाव करेंगे
अब file खोलते हैं टाइप करें gedit space history html space ampersand और enter दबाएँ
कुछ लाइनें जोड़ते हैं
file को सेव और बंद करते हैं
इस point पर अपना काम commit करते हैं टाइप करें git space commit space hyphen am space double quotes में added chapter two in history html और enter दबाएँ
अब तक हम master branch के साथ कार्य करते आ रहे हैं
अब हम check करते हैं यदि यह commit newchapter branch में दिखता है
newchapter branch में जाने के लिए type करें git space checkout space newchapter और enter दबाएँ
अब git log check करते हैं टाइप करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
यहाँ हम commit added chapter two in history html नहीं देख सकते क्योंकि यह master branch में है
add अपनी story html file में कुछ लाइनें जोड़ते हैं type करें gedit space story html space ampersand और enter दबाएँ
मैं अपने writer document से कुछ लाइनें जोडूँगी
file को सेव और बंद करें
git status check करने के लिए type करें git space status और enter दबाएँ
ध्यान दें इस स्थिति में हमने अपना काम कमिट नहीं किया है
आपको क्या लगता है क्या होगा अगर हम committing के बिना branch बदलने की कोशिश करते हैं ऐसा करने से error आनी चाहिए
अब master branch पर वापस जाने की कोशिश करते हैं type करें git space checkout space master और enter दबाएँ
यह error दिखाती है कि हम इन बदलावों को कमिट किये बिना अन्य branches पर वापस नहीं जा सकते
लेकिन क्या होता है यदि मैं बदलावों को commit नहीं करना चाहती क्योंकि वे इस समय महत्वपूर्ण नहीं हैं यह stashing उपयोग करके किया जा सकता है
हम stashing के बारे में आगे आने वाले tutorials में सीखेंगे
अभी के लिए हम hyphen hyphen force flag उपयोग करके इस branch को बलपूर्वक exit करेंगे
type करें: git space checkout space hyphen hyphen force space master और enter दबाएँ
एक बार फिर यह check करने के लिए कि बदलाव हटाए गए हैं या नहीं हम newchapter branch पर वापस जायेंगे
type करें: git space checkout space newchapter और enter दबाएँ
अब file story html खोलते हैं टाइप करें gedit space story html space ampersand और enter दबाएँ
यहाँ हम let सकते हैं कि हमारे बदलाव हटाए गए हैं अब gedit बंद करते हैं
अगले tutorial में हम newchapter branch को master branch के साथ merge करना सीखेंगे
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं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
एक नियत कार्य मेंchaptertwo named एक branch बनाएं
chaptertwo branch में जाएँ
कुछ commits करें
master branch में वापस जाएँ
git log check करें और समझें कि master branch में आप branch chaptertwo के commits नहीं check सकते
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और online tests pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है